यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है और एक मकान बना हुआ है जिसकी दीवाल का कलर रेड --

एक पोस्टर लगा हुआ है और बिजली के खम्भे भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बिजली के तारे लगी हुई हैं और कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे--

यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है और सीड़िया भी बनी हुई कोई चद्दर शेड बना हुआ है और आगे के सामने गार्डन है जिसमे घास उगा है।

यहाँ पे एक मकान बना हुआ है जिसकी दीवाल का कलर वाइट और ग्रीन है यहाँ पे एक लोहे का गेट लगा हुआ है और बॉउंड्री भी दिखाई दे रही --

नीचे घाश उगी हुई है और रोड भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ से एक मंदिर दिखाई दे रहा है। जिसकी दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पर बोहोत सारे सीढियां भी बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।